सड़क के पास में कुछ फूल पौधे गमले भी दिखाई दे रहे हैं।

और एक आदमी पैसे गिन रहा है और इसमें कुछ मूंगफलीयां भी दिखाई दे रही हैं और इसमें--

और ऊपर की ओर आसमान भी दिखाई दे रहा है।

एक आदमी हेलमेट पहने हुए खड़ा हुआ है और एक सिलेंडर भी दिखाई दे रहा है बाइक भी नजर आ रही है।

इस तस्वीर में एक मैरिज होम नजर आ रहा है।

यह बहुत बड़ा दिखाई दे रहा है और उसमें दो तीन आदमी नजर आ रहे हैं।

बाइक भी नजर आ रही है।

और कुछ पेंट अलग अलग ऐसे ही रखे हुए हैं।

पंजाब नेशनल बैंक भी दिखाई दे रहा है और यह पानीपत रोड शामली पर में है औ--